सारे उन के जो मशीनर होते हे वो दिखाई दे रहे। तीन पंखे दिखाई दे रहे सामने कुछ ब्लू कलर का डोर जैसा दिखाई दे रहा।

वो खाड्डे (गड्ढे) से भरा हुआ रोड है पूरा।

ये किसी मस्जिद वगेरा का फोटो खीचा गया है। जहां पे गेट नंबर चार लिखा हुआ है। यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड है।

पूरा डेकोरेशन पत्तों के उस डेकोरेस्ट किया गया हे पूरा और मस्जिद को पूरा ग्रीन कलर से --

आ जहाँ पे बहोत सारी ये चीजे दिखाई दे रही है इस साइड में साबू वगेरा दिखाई दे रहा है सामने की साइड में कुछ --

नमकीन जैसा दिखाई दे रहा है और बाजू में कुछ अ बुक्स वगेरा बहोत सारे दिखाई दे रहे हैं। एक टेबल है। --

बोर्डर दिखाई दे रही और बीच में बहुत सारे लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे पीछे एक पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा --

ये किसी बोटिंग का फोटो दिखाई दिया या तो किसी अ--

बोलते दरिया किनारे से फोटो खिंचाई गैया है। दो बोट पीछे दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे दो बंदे जो हैं एक ने --

किसी स्कुल में ड्रॉइंग वगेरा के क्लासिस का फोटो है जहाँ पे --

की पट्टियां दिखाई दे रही है। एक बंदा जो है कुछ वेल्डिंग्स वगैरा कर रहा है।

ये किसी वाशिंग सेंटर का फोटो दिखाई दे रहा है। जहाँ पे (पर) एक जो है।

ये किसी केफे का फोटो दिखाई दे रहा है जहा पे कुछ केचप की बोटल दिखाई दे रही है बहोत सारे टेबल्स और --

टेबल पे कुछ वाईट कलर की प्लेट्स रखी गइ है और पीछे का जो है पूरा भरा हुआ है। बहोत सारे बंदे बेठे हुए हैं वहा पे।

पर्स पकड़कर रखा हुआ है। जो गोल्डन कलर का पर्स है उसमें ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। साइड में किचन वगैरा जैसा दिखाई दे रहा है।

ये किसी महल वगैरा का फोटो खींचा गया है। जहाँ पे (पर) नीचे जो है--

एन-न् कुछ समथिंग दिखाई दे रहा है। बहोत सारे बलुन्स दिखाई दे रहे हे। बहोत सारी --

पर यलो कलर के अ चप्पल पेहेन रखी हैं खूब और पूरा मस्जिद जो है ब्लू रेड ओरेंज यलो कलर से --

पूरा फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रहा है।

अ ज़ालन ब्रांच अ इंग इंग्लिश में लिखा गया हे मतलब पूरी बेंक का फोटो आगे से किया गया है।

वोकिंग किया गया है। उसके ऊपर न्-दे --

कम्प्लीटली नहीं दिखा सकती। क्योंकि यहाँ पे (पर) चार छः पाँच छः सात टोटल --

तो खिस्कोली जेसा कुछ दिखाई दे रहा हे और बहोत सारे वो क्या बोलते हे उसको एलोवेरा के पेड़ भी दिखाई दे रहा हे।

बहोत (बहुत) सारे रास्ते है ऊपर भी बहोत (बहुत) सारे रास्ते है। कुछ दो लोग दिखाई दे रहे हे। एक बूढ़ा आदमी है।

साइड में एक बंदा है। जिसने चप्पल पेहेन के रखी है कोफ़ी कलर का पेंट पेहेन के रखा है और वाईट कलर का शर्ट पेहेन के रखा हुआ है।

और नीचे बहोत सारी प्लास्टिक की बेग्स भी रखी गए है।